यह एक एस्मार्ट बाजार है और इस बाजार में हमें सारी चीज उपलब्ध होती है जो कि घर के लिए होता है बहुत जरूरी और --

एक आदमी खींच भी दे रहा हैं ।

चिड़ियों से भरा हुआ रहता है अनेक प्रकार की चिड़ियाँ आप ने कितनी चिड़ियाँ देखी है मैने कम से कम चालीस प्रकार की चिड़ियाँ ही देखी होगी और चिड़ियाँ मस्त डगा्ल पर बैठी हुई है उनके लिए कटोरा खाना ला दिया गया है।

यह शाम का समय है मैदान बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है और --

यहाँ एक फैक्ट्री जैसे लग रहा है जो कि आदमी लोग बोरा से कुछ पकड़-पकड़ कर ला रहे हैं ले जा रहे हैं और मास्क पहने हैं एक महिला भी क्या कर रही है पता नहीं एक पुरुष --

और वो खड़ी है जाने के लिए --

यह एक अअअ अ बलरामपुर ज़िले का कार्या लय है जोकि नगर पंचायत बलरामपुर में स्थित है इसे हम गौर से देखे है गए थे जब- तब और बड़ा - ही सुन्दर दृश्य हैं ।

यह एक अ गिलास का बिल्डिंग बनाया जा रहा है जोकि --

लोहे से ही बना है और बहुत वजन होगा अभी इसमें कलर नहीं पोता गया है अभी इसमें रेत माल मारकर कलर पोता जाएगा जोकि अपनी पसंद का होता है और दो पल्ले का दरवाजा हैं। .